दो पुतले भी खड़े हुए हैं काफी सारे लाइट्स भी है और रंग-बिरंगी गुब्बारे --

और एक आदमी ब्लू कलर की शर्ट और येलो कलर का --

यहां पर ट्रैक्टर के काफी सारे पहिया रखे हुए हैं ऊपर टीन शेड --

और कुछ लाइट्स की डोरियाँ ऊपर से दिखाई दे रही हैं।

गेंदे के फूल खिल रहे हैं और पीछे काफी सारे लंबे-लंबे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक काफी बड़ा मंदिर है जिसकी --

जो रंग-बिरंगे ड्रेसों में यहाँ पर मौजूद हैं और रंग-बिरंगे गुब्बारों से डेकोरेसन किया गया है जो की --

पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं लंबे-लंबे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं झाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं।

मिलते हैं यह काफी बड़ी दुकान जिसमें काफी सारी ड्रेस दिखाई दे रही है सामने --

एक टेबल पर कुछ सामान भी रखा हुआ है ऊपर कुछ केटली जैसा टंगा हुआ है दिवार ऊपर काफी सारे फोटुवा --

यहां एक बिल्डिंग बनी हुई है और सामने पार्क जैसा डला हुआ है कुछ लोहे के --

हाथ दिखाई दे रहा है सेब और पीछे काफी सारे लंबे-लंबे कुछ और भी पेड़-पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

यह एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पर कुछ डॉल खड़ी हुई है जो की रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और --